कई सारी साड़ियां मिलती हैं हर तरीके की साड़ियां मिलती हैं।

पार्क का लग रहा है। यहां पर एक स्टेच्यू बना हुआ है।

यह एक पार्क का सीन है यहां पर एक जानवर का पुतला है जिसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है।

यहां बहुत सारे लोग आते हैं घूमने और यहां पे कितना मस्त आसमान है और यहां पानी साफ सुथरा है।

यहां पीला तसला नीला तसला और कई सारे तसले रखे हुए है।

यहां लग रहा है कि कार की रिपेंटिंग या डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है।

पीछे शेल्फ में मेडिकल लॉ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और स्कूल कॉलेज के लिए बुक है।

कार की सर्विस वर्विस सब होती है। यहां कई सारी कार खड़ी हैं। ये कार बिल्कुल न्यू लग रही है। एकदम नई चमक रही है।

अ इसके अंदर खुशबू वाला ओ भी रखा हुआ है और यहां रिंच भी रखी हुई है।

यहां पे लिखा है मटका कुल्फी फालूदा।

यहां कुल्फी फालूदा ये सब कुछ मिलता है।

बने हुए हैं। कई सारे हैं और नीचे घास बनी हुई है।

हाँ यह एक नदी का सीन है यहां पर एक आदमी बैठा है।

दो औरतें और भी हैं उसके पीछे।

यहां पर कई सारे जगह पर पानी भरा हुआ है।

पर कई सारे रिक्शे खड़े हुए हैं और टेम्पू भी जा रहा है।

ये लोग चेयर पे बैठे हैं बूढ़ी औरत बैठे हैं बूढ़े आदमी बैठे हैं।

और ये भाई कुछ बना रहा है और यहां लाइटे लगी हुई है।

एक शॉप है यहां ऊपर खूब लाइटें जल रही हैं।

खंबे भी लगे हुए है और बाहर कई लोग खड़े है और एक बाइक भी खड़ी है।

और इधर कोलकत्ता रेगलिया भी लिखा हुआ--

पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल और यहां पर सी_एन_जी भी लिखा हुआ है।

यहां पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा जाता है यहां कई सारी कार और ऑटो आए हुए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए।

इस इमेज में एक मिठाई की दुकान दिख रही है यहां काफी तरह के इंडियन स्वीट्स मिठाइयां डिस्प्ले में रखी गई हैं।

ये नदी का व्यू है यहां एक आदमी बैठा हुआ है।

और उसके पीछे नाव जा रही है जिस पे कई लोग सवार है।

बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और एक डस्टबिन भी रखा है और यहां कई सारे पेड़ है यहां बेंच है।

बहुत सारी भीड़ है और यहां दूर दूर तक की लगी हुई है टेंट लगे हैं।

यहां पे एक कुर्सी रखी हुई है जिसके नीचे भूसा रखे हुए हैं।

लिखा है मुंशी पुलिया और व्हाइट लाइट भी जल रही है।

और ये ट्रैक्टर से गाड़ी जोड़ रहे हैं जिसपे डिलक्स लिखा है और इस नीचे गाड़ी के एक आदमी बैठा है।

कई सारे गमले हैं जिनके ऊपर पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा फ्रेम जैसा भी लगा हुआ है।

रात का इंडस्ट्रियल पोर्ट सीन दिख रहा है।

जिसका नाम न नफीसा जहां है।

एक आदमी बैठा है कुछ कर रहा है।

ये सब भी लगे हुए हैं और ऊपर तार लटक रहे हैं जिस पे दो चिड़िया बैठी हुई--